आ एक नदी का सीन चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत पानी है इसके आसपास की सीढ़ियांये दिखाई दे रही हैं जिसमें मंदिर के रंग के कलर की वजह से बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा है।

और बहुत सारी सड़ा होने की वजह से आसपास के मंदिर दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से ये मंदिर बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा है।

केमिकल्स की दुकान है जहां पर जिम से रिलेटेड अ फूड सप्लीमेंट्स खाए जाते हैं फूड सप्लीमेंट्स खाने से बॉडी में डिफरेंट तरह के इंप्रूवमेंट होते हैं जिनसे --

यह एक नदी के तालाब की फोटो है जिसके अंदर कुछ पक्षी पशु पक्षी की परछाई दिखाई दे रही है।

यह एक सुंदर नदी है जिसके आसपास बहुत सुंदर घांस उगी हुई है।

यह एक स्कूल विद्यालय का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमे अ किसी व्यक्ति या पुरुष के बोले जाने के अनुसार एक मॅम टाइपिंग कर रही है टाइपिंग के अनुसार --

जो शब्द वह सर पेपर में से पढ़ कर बोल रहे हैं उन शब्दों की मैडम टाइपिंग कर रही है मैडम द्वारा एक लिखित पेपर तैयार किया जा रहा है जो की सामूहिक प्रतिलिपि के रूप में कार्य करता है।

रूम के बाहर सफाई का बो --

या फिर घोड़ों का कलर ही ऐसा है।

ये एक सुंदर फ्लाईओवर के ऊपर जो अ ब्रिज खड़ा हो रहा है उसकी मरम्मत का कार्य --

ये महिला दुकान के सामने से गुजर के जा रही है जिसका ये सामूहिक चित्र दिखाया जा रहा है ये महिला हाथ में थैला लेकर --

प्रतिमा सामूहिक प्रतिमा खिंचवा रहे हैं मोबाइल के द्वारा जो नाव के ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे हैं।

ताकि वो नाव पर बैठकर उसको चलाने का अभ्यास कर सकें।

जिन पर धूप की छांव पड़ने पर इन पे डिफरेंट कलर का कलर दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही सुंदर --

कुछ संत्री कलर के रंग पत्तियां पड़ी हुई है और कुछ हल्की हल्की ग्रीन घास भी दिखाई दे रही।

अपनी कॉपी में कुछ नोट्स उतार रहे हैं ये किसी कोचिंग क्लास की --

उसने यह बताया हुआ है कि किस मुद्रा में किस तरह का आसान किया जाता है और किस मुद्रा में किस तरह का आसान किया जाता है।

यह एक छठ की पूजा के आयोजन के संपर्क में बहुत सारी महिलाएं नदी के किनारे इंतजार कर रही है जो की छठ पूजा की तैयारी --

इस बीम के अंदर लगाएं गए लोहे में जगह जगह मसाला भरकर उस बीम को सख्त और मजबूत कर रहा है।

मकान मालिक की व्यवस्था की वजह से उनके अंडर में है और नीचे का आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के अंडर में हैं।

एक घर के बाहर का सामूहिक चित्रण है जिसके द्वारा वहां के बाहर की साफ सफाई के बीच में।

ये एक फार्म हाउस का समूह चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें।

बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है ये ग्रीन वैली ग्रीन वैली के रूप में बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

यह गांव में एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाने वाले शिक्षक हैं जो महिलाओं के सामने।

जो कि उसे और सुशोभित कर रहा है तथा उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है।

यह एक हाईवे है जिस पे से लाखों लोग सड़क वाहन के द्वारा गुजरना निकलना करते हैं।

के आसपास रखने की व्यव --

और उसके बाहर कुछ बाइक्स भी खड़ी हुई हैं जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं।

इसके निर्माण के आधार पर इस किले का निर्माण सुयोजित किया जाएगा।

ने पेट्रोल पंप के पास।

ये पेट्रोल पंप के पास का सीन है जहा पर लाइट जाने की वजह से अंधेरा हो जाने की वजह से वहा पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।

यह एक नदी के आसपास का सामूहिक चित्रण हैं जिसके पड़ोस में किप पंजीम क्लीन एंड ग्रीन --

आइडेंटिफिकेशनवाला ये शहर है जिसके इस नदी के दूसरे छोर पर जो पेड़ पौधे उग रहे हैं वो बहुत ही सुंदर सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं।

यहां नदियों का जल बहुत साल पहले से भरा हुआ है और ऐसे ही भरा रहता है।

के ऊपर ग्रीन कलर की घांस लगी हुई है जो कि नए-नए रंगों में लगे होने की वजह से सुंदर प्रतीत हो रही है तथा वहां से कुछ लोग।

और दृश्य प्रणाली का चयन कर कर आ रहे हैं इसलिए वो खुश हो रहे हैं।